आस पास खिड़की है जो स्टील के बने है।

दुकान का शिशा का गेट है।

तस्वीर में पार्क दिख रहा है।

टेबक कुर्सी है बैठने वाला लकड़ी का बनाया हुआ है।

घर दिख रहा है इसके ऊपर का छत है।

उसके ऊपर जो सफेद कलर से पेंट किया गया है।

के ऊपर कुछ पौधे छोटे छोटे घास उगे हुए है।

कुछ पोस्टर जैसा रखा हुआ दिख रहा है।

जो सीमेंट से प्लास्टर किया गया है।

पास में एक आदमी साइकिल चलाता दिख रहा है।

लाल कलर का दो गैस खड़ा दिख रहा है।

माटी से पेंट किया गया है।

बल के ऊपर पर्दा बिछा है।

दुकान के अंदर वो सफेद लाइट जल रहा है।

बाहर कुछ कपड़े लटकाए गए हैं।

दुकान वाला रूम हल्का ग्रीन कलर से पेंट है बाल्टी दिख रहा है जो ब्लू कलर का है।

तस्वीर में रोड दिख रहा है।

सफेद कलर का है।

के ऊपर रामचंद्र सिंह लिखा है।

पूल दिख रहा है पूल के नीचे पानी ज्यादा दिख रहा है।

ऊपर एक आदमी चढ़ा दिख रहा है।

दो आदमी रोड के किनारे बैठे हैं।

इसके ऊपर बहुत सारा तार जाता दिख रहा है।

अगो छोटे छोटे सुखे गेंदे का फूल का माला है।

रूम के अंदर एक डेस्क है जो सफेद कलर से पेंट है और डेस्क ऊपर एक म मशीन है।

कोई हैंगर है हैंगर पे कुछ कपड़ा लटका है जो काले कलर का है।

पेट्रोल पंप के सामने एक घर दिख रहा है।

घर घर सफेद कलर का पेंट किया गया है।

पेट्रोल पंप के पास में कुर्सी रखा है आगे एक कार खड़ा है ट्रैक्टर है।

इसके ऊपर दी ए_टी_एम लिखा है।

सामने ग्रिल दिख रहा है ग्रिल के पास एक पिलर है जिसके ऊपर तमिल में कुछ लिखा है।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है अन्दर व्हाईट लाइट जल रहा हैं।

बहुत सारे लाइन के पोल दिख रहे हैं सफेद लाइट जल रही है।

पीछे काफी छोटे छोटे पौधे लगे हैं।

लाईट जलता दिख रहा हैं आस पास कुर्सी लगे हैं।

रेलिंग पिंक कलर से पेंट किया गया है।

मौसम बरसात लग रहा है।

फील्ड में इलेक्ट्रीशियन का दुकान दिख रहा है।

नीचे एक हैंगर है जिसके ऊपर एक कपड़ा अटका दिख रहा है।

के ऊपर कपड़े का कपड़ा डिजाइन रखा गया है।

रेलिंग के ऊपर पोस्टर लगा है।

अलमारी हेलमेट काले कलर का है।

पीछे दीवाल पे बुद्ध का तस्वीर बनाया गया है जो ऑरेंज कलर का है।

बड़ा शीशे का खिड़की है जिसके अंदर कुछ सामान भी कूट रखे हैं।

और एक महिला एक पुरुष बैठे हैं।

कुछ आदमी चलते दिख रहे हैं।

तस्वीर में एक चाय की दुकान दिख रहा है।

एक शीशे का अलमारी दिख रहा है।

सामने बोर्ड लगाया है जिसके ऊपर एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी लिखा है।